एक जगह है इसमें चेयर लगी हुई है पीछे ऊपर इसमें लाइट वाला वो लगा हुआ है सूर्य प्लेट वाला --

तस्वीर दिखाई दे रही है उधर शिवजी का और पार्वती जी का गणेश जी और कार्तिक जी वो दिखाई दे रहे गोद में --

यह एक बहोत ही अच्छी पेंटिंग दिखाई दे रही है इसमें पेंटिंग में कुछ एक पेड़ सा बना हुआ है नीचे --

रेड रेड वो लाइन टी शर्ट पहनी हुई है वो और ये खुद पेट किसे अलग आके टच करके दिखा दे रहा है आदमी का चश्मा लगाया है और जूता पहना हुआ है साइकल साफ दिखाई नहीं दे रहीं हैं।

दिखाई दे रहा है कुछ बुक्स का कुछ बना हुआ है सोफा दिखाई दे रहा है सोफे के आगे एक टेबल लगा है सोफे के ऊपर एक मोबाइल फोन पड़ा है।

मौज मस्ती कर रहे हैं पीछे एक पेड़ पहाड़ कुछ दिखाई दे रहा है साइड में एक उधर एक बिल्डिंग कुछ दिखाई दे रहा है बैठने को पटड़ी दिखाई दे रहा है।

ये रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन के अंदर का दिखाई दे रहा है चिल्ला दिखाई दे रहा है चिल्ला के ऊपर ये कंकड़ पड़े हुए हैं चिल्ला दिखाई दे रहा है उधर पीछे --